हम लोग सड़क के किनारे हैं।

छोटे छोटे लड़के को लड़के लोंगो को अरबी पढ़ा रहे हैं।

इसमें बहुत से बच्चे आए हुए हैं। कुछ लोग अपना शोंक याद कर रहे हैं।